यहां पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए दिख रहे--

मुझे यहां पर एक टैटू की दुकान दिख रही है।

मुझे यहां पर एक दुकान दिखाई दे--

मुझे यहां पर एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई दे रहा है।

है यह बिल्डिंग अति सुंदर है यहां पर कुछ पेड़ लगे हुए--

यह झरना चट्टानों के बीच से निकला हुआ है।

यह दृश्य अति ही मनमोहक है यहां पर किनारे एक वृक्ष लगा हुआ है।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

मुझे यहां पर एक बार सेंटर दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहोत सारी टाइप्स की ड्रिंक्स रखी हुई--

यहां पर चांदी के बहोत सारे आभूषण रखे हुए हैं।

हैं यह फूल बहोत ही सुंदर दिखाई देते--

इस स्टेशन पर बहुत सारे यात्री खड़े हो--

मुझे यहां पर एक होटल दिखाई दे रहा है।

सड़क पर एक आदमी चल रहा है।

जिसे सफेद और लाल रंग के गुब्बारों से सजाया गया--

ये रेस्टोरोन बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है यहां पर एक ए_सी लगा हुआ--